--बहोत ही ज्यादा भीड़ दिख रहा पानी में खड़े है सभी हाथ जोड़े खड़े हुए दिख रहे है पीछे बड़ा बड़ा पेड़ जैसा दिख रहा है काला काला दिख रहा है।